घर के पीछे एक नारियल का पेड़ है जो की बहोत लंबा है।

औल जो इंसान वहाँ पे खड़े हैं जो एकसाथ बातें कर रहे हैं।

मशीन के साथ लोग भी है लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे है। और जिम मे बहुत सारे आइएने दिखाई दे रहे है।

बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक ब्लू कलर की मेंट बिछाई है उसके ऊपर लाल और ब्लैक कलर की मेंट बिछाई हुई है।

ऐसा सलून दिखाई दे रहा है जिसमे फैन लगे हुए हैं बहुत सारे लाइटिया लगी हुई है।

एक बड़ा सा रोड दिखाई दे ला है जिसके बाजु मै एक ए_टी_एम मशीन दिखाई दे ली है जो की बंद है उसके बाहल दो लोग खड़े हुए है।

एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जो की लग रहा है की अभी-अभी खुली है उसमे बहुत सारे बैलून दिखाई दे रहे है बहुत साली किताबे दिखाई दे रही है।

यहां इस जगह पे एक बड़ा सा पेंडाल लगा हुआ है में बहुत सारे पर्दे लगाएं हए हैं।

अलसा लूम दिखाई दे ला है जिसमे बहुत साडी किताबे दिखाई दे रही हैं जिसमे बहुत लोगो की भीड़ दिखाई दे ली हैं बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए है।

एक आदमी उसका मोबाइल लेके लोगों को कुछ समझा रहा है।

पेड़ो के बाजु मै एक इंसान खड़ा है जो की बहुत सीधा-साधा लग रहा है।

बड़ा सा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जिसमें परदे लगे हुए हैं पर्दो के नीचे बोहो बड़ी लंबी सी ग्रीन मॅट लगाई हुई है ।

सा रोड़ दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी गाड़ियाँ आते जाते दिख रही हैं उसमे बोहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे एक बड़ा सा पुलिया दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा रोड दिखाई देला है जिसके बाजु में बहुत सारे दुकाने दिखाई देलें हैं।

बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे किताबें लगाए हुए है।